हरे भरे पेड़ लगे है और नीचे की तरफ से बहुत सारी मोटरसाइकिल सवार और कुछ ऑटो में लोग आते जाते नजर आ रहे हैं।

अ आस पास तो बहोत सारे कपड़े के बंडल बंदे हुए रखे के देखा जा सकता हैं।

मैट पर भी लाइन लगा कर खड़े हुए दिखाई दे र--

और सामने की तरफ दो व्यक्ति सड़क पर बैग पीछे टांग कर जाते हुए दिखाई दे रहें है।

एक व्यक्ति की से बाहर की तरफ सामान खरीदते आता हुआ नजर आ रहा है।

पर एक वृक्ष को चार लोहे के स्टैंड से--

और बाहर की तरफ एक स्कूटी और एक कार खड़ी हुई नज़र आ रही है।

और इसके अंदर भी बहुत सारे ज्वेलरी के लग रही है रखी हुई हैं के सामने ही बहुत सारी लक्कड़ की कुर्सियां लगाई गई हैं।